और यहां पर गमले रखे हुए है।

यह एक सिटी स्टोर्स स्टोर्स है।

और एक टायर भी नजर आ रहा है और यहां पर एक पाइप भी टंगा हुआ है।

और सिर पर मुकट है।

और लोहे की ग्रिल भी नजर आ रही है।

यहां पर शिशो का गेट है।

और गैस फैन भी है और नीचे टाइले लगी हुई है।

और एक गाड़ी भी नजर आ रही है।

यह एक लैपटॉप रिपेयरिंग की दुकान है।

और एक एल_सी_डी भी नजर आ रही है।